सामने पुलिया टाइप्स में दिखाई दे रहा है पुलिया के आस पास में और कोई तो नहीं दिखाई दे--

के लिए यहाँ पे इतनी सारी मशीनें खड़ी हुई हैं कुछ लोग भी हैं जो कि यहाँ पे खड़े हैं शायद ये क्रेन मशीन खड़ा होने की जगह पर है।

जो सामने एक जीप दिखाई दे रही है जीप के अंदर कोई आदमी बैठा है और इसके अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ आएगा जीप जो है वो --

कलर की है और उसके बाहर एक कारपेट जैसा बिछा हुआ दिखाई दे --

और पेड़ भी काफी अच्छे डिजाइन से लगे हुए नारियल का पेड़ और एक नॉर्मल --

मुझे सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने अपने दोनों हाथ में दोनों पैर में जूते पहन रखे हैं और इसने जो कपड़ा पहना है वो समझ नहीं आ रहा है कैसे और क्या पहना है।

इसने एक कैप भी लगाई है जिसके ऊपर बॉय लिखा हुआ है उसके पीछे सामान रखा हुआ है और यह आदमी जो है वो डांस कर --

यहां पे बीच में एक टेबल रखी हुई है जो क्यों रखी है पता नहीं और यहां पे बहोत सारा समा--

अपने इस अ ग अपने ब बॉडी पे इस्काफ बांधा हेगा वो ब्लू --